इसके अंदर एक ड्रॉवर रखी है बहुत सी बुक उसमें रखी हुई है।

और ऊपर कपड़े टंगे हुए है ए_सी लगी है एक बोर्ड लगा हुआ खिड़कियां खुली हुई है।

इसके उधर बहुत से पेड़ लगे हुए हैं।

उसके बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

और पेड़ छोटे लगे हुए हैं बहोत हरे भरे लगे हुए हैं।

इस में बहोत से जेवर रखे हुए हैं।

बोर्ड दिखाई दे रहे हैं।

सामने की तरफ रेक रखी हुई है जिसमें बहोत सामान है।

इसमें बड़े-बड़े परदे लगे हुए हैं और गुलाबी परदे लगे हुए हैं। लाइट जल लई है।

इसमें स्टैंड लगे हुए हैं।

यह एक जिम है यहां पे एक बैंक है।

और इसके उधर भी एक घर बना है वैसे--

से सजा हुआ एक सोलर लगा हुआ है।

गाड़ी खड़ी हुई है स्कूटी खड़ी हुई है।

और एंगल पे कपड़े टांगे हुए हैं एक पोस्टर लगा हुआ है।

लाइटों से सजी हुई है। फूलों से --

घास पड़ी हुई हैं और एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है नीचे बहुत सी पत्तियां पड़ी हुई हैं।

इधर बहोत से तार है एक बोड दिखाई दे रहा--

उसके ऊपर बैग रखे हैं और दो अलमारी हैं।

उधर कोका कोला की दुकान है।

खड़े हुए हैं कुछ बैठे हुए हैं।

के अंदर एक बेड रखा हुआ है।

एक बहोत बड़ा गार्डन दिखाई दे रहा है।

बच्चे फुटबॉल खेलते हुए दिखाई दे रहे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं।

और बहोत बड़ा बना हुआ है इसके अंदर बोर्ड भी लगे हुए हैं।

और गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं लगा--

और पीछे व्हाइट से परदे से सजा हुआ है।

पेड़न भी लगे हुए हैं घर भी बने हुए हैं।

बहोत लोग झाड़ू लगा रहे हुए सफाई कर रहे है।

और इसमें रेलिंग लगी हुई हैं नीचे--